यह एक साइड में मल्टी बनी है थोड़ी दिख रही है और उस पेड़ लगा हुआ है।

सामने कनिक रा-रास्ता है सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है उसमे नीली शटर लगी हुई है।

ये लगा हुआ है ये एक अच्छी झोपड़ी दिख रही है एक टीन सेट लगा हुआ है लगा हुआ है आसमान दिख रहा है।